यह एक पुस्‍तकालय है यहां पे न्‍यू ओपन हुआ है यहां पे गेंदे के फूल की माला लगी हुई है डेकोरेट किया गया है।

यह एक क्रिस्चियन का मंदिर है यहां पे एक मू मूर्ति बनी हुई है क्रिस्चियनो की।

यहां पे एक गर्वमेंट द्वारा बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है।

और टाईल्‍स लगी हुई है आसमान भी दिख --

यहां पे एक रोड दिख रही है और यहां पे एक बड़ी सी पुल बनी हुई है इसपे सीमेंट की बाउंड्री बनाई गई है।

और माईक भी रखा हुआ है।

ग्रीन कलर की मेट बिछी हुई है।